ये लगता है बोट से घुमने आए है तीन जन लड़की है और एक लड़का है लगता है लड़का घूमाने लाया है तीनों को--

किसी चीज का पूजा कर रहा है और सेव संतरे केले और पूजा का समान है बहुत आदमी है बच्चे भी हैं।

जंगल में घूमने गए हैं और हरा भरा पेड़ है बहुत अच्छा दिख रहा लगता है बर का पेड़ हैदो आदमी है बैग टाँगे हैं दोनों और बहुत अच्छा लग रहा है हम होते तोह हम भी घूमने जाते हमारे यहाँ जंगल भी नहीं है।